इस चित्र में बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही। एक नाव चलाने वाला दिखाई दे रहा है। एक आगे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे दो औरतें दिखाई दे रही है एक मकान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में दो ऑटो रखे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में सभी लोग खाना खाते हुए नज़र आ रहें हैं कुछ खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं।

चित्र में बोरी उठाते हुए एक मजदूर दिखाई दे रहे है पीली और सफेद रंग की बोरियां है।

चित्र में लाल रंग के कपड़े पहने क्रिसमस दिखाई दे रहा है सभी ने बच्चियों ने लाल टोपी लगायी हुई है।

इस चित्र में मंदिर की आकृति दिखाई दे रही है और सारे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं एक पुरुष गुड़ियाॅं के बाल बेंचते हुए दिखाई दे रहा हैं नीचे टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष आते जाते दिखाई दे रहे हैं।